के ऊपर जलाई --

बागान के बीच एक पतली सी --

या अपने-अपने योगा कर रही हैं और यह --

फोर व्हीलर खड़े है और यहाँ पर पंडाल भी --

पानी हो सके और बहोत सारे पेड़-पौधे --